meet the gimp के spoken tutorial में आपका स्वागत है
यह ट्यूटोरियल उत्तरी germany के bremen में rolf steinort द्वारा निर्मित है
अब आज के tutorial के साथ शुरू करते हैं
यह curves के बारे में है
सबसे पहले मैं tool box में curves tool को सक्रीय करती हूँ और फिर image में click करती हूँ
आप देख सकते हैं कि curves tool में एक histogram है और यहाँ gray scale के साथ 2 bars हैं
फिर curves tool में चुनने के लिए कुछ buttons हैं जैसे preview save open आदि
लेकिन अभी के लिए हम curve tool के gray scale bar पर ध्यान केंद्रित करेंगे
यहाँ यह bar source image की भिन्न colour range को दिखाता है
और इस bar में हमारे पास कुछ pixels हैं जो वास्तव में dark हैं और कुछ pixels हैं जो वास्तव में bright हैं और बीच में कुछ pixels हैं जो dark से light की ओर हैं
यहाँ यह क्षैतिज bar 256 भिन्न colour tones रखता है
इस bar पर आरंभिक point zero है जो काला है और अंतिम point 255 है जो सफ़ेद है
और उदाहरण के लिए यह यहाँ 184 gray है
यह image बहुत सारे colours रखती है और यहाँ मैं channel बदलकर आपको भिन्न colours दिखा सकती हूँ
अब colour channel में red चुनें और आप image में red tones देख सकते हैं
उसी प्रकार आप सम्बंधित tones प्राप्त करने के लिए इसे green या blue से बदल सकते हैं
और इस image में यह बहुत आश्चर्यजनक नहीं है कि green channel प्रधान channel है जो इसमें बहुत सी values रखता है
अब reset channel पर click करते हैं
प्रत्येक tone के ऊपर histogram का curve pixel की गिनती है जो luminosity यानी चमक रखता है
और यहाँ हमारे पास एक क्षेत्र है जहाँ bar पर इस terminal और इस terminal के साथ pixels की संख्या लगभग समान है
histogram दिखाता है कि यहाँ उच्चतम colour range हैं
आप image में जाएँ जब curve tool सक्रीय होता है और mouse cursor एक छोटे dropper में बदल जाता है जब मैं यहाँ click करती you तो histogram में line उस point तक shifts होती है
आप image में click कर सकते हैं और image में कौन सा tone कहाँ है जानने के लिए घूम सकते हैं
अब हमने यहाँ क्षैतिज bar कवर कर लिया है
और यह यहाँ output है
और यह भी 256 भिन्न values हैं और ये image बनाती हैं
क्षैतिज bar में वह data होता है जो curve में रखा data है और उर्ध्वाधर bar में वो जो bar data है
बीच की यह line जो graph को crosses करती है translation function है
जब मैं translation कर्व में mid gray से ऊपर जाती हूँ और फिर जब मैं बायीं तरफ उर्ध्वाधर bar पर जाती हूँ तो मैं दोबारा mid gray पर पहुँचती हूँ
मैं जितना चाहती हूँ इस curve को खींच सकती हूँ और जब मैं इसे नीचे खींचती तो आप देखते हैं कि image ज़्यादा darker हो जाती है
और अब जब मैं mid gray से कर्व पर जाती हूँ और फिर बायीं तरफ जाती हूँ तो मैं dark gray पर पहुँचती हूँ
आप यहाँ यह देखते हैं कि यहाँ निचला bar मौलिक input है और उर्ध्वाधर bar curves tool का output है
मैं बहुत से भिन्न तरीकों से इस curve को बदल सकती हूँ जिसकी लगभग कोई सीमायें नहीं हैं
पहली सीमा है कि मैं curve को पीछे की ओर नहीं खींच सकती और जैसे ही मैं ऐसा करती हूँ curve tool पर जो point है one खो जाता है
लेकिन अगर मैं image में कोई भी bright pixels नहीं देखना चाहती तो मैं सारे points नीचे खींचती हूँ और फिर image लगभग काली हो जाती है
बस इस point को यहाँ ऊपर खींचें और आपको यहाँ कुछ bright चीज़ मिल सकती है
आप curves tool के साथ तब तक play कर सकते हैं जब तक images प्राप्त नहीं हो जाती जो बहुत सालों पहले से fashion में हैं
हम reset button पर क्लिक करके curve को पुनः शुरू कर सकते हैं और मूल curve प्राप्त कर सकते हैं
curves tool में कुछ अधिक buttons हैं जैसे linear mode और logarithmic mode
logarithmic mode में आपको छोटी values बढ़ कर प्राप्त होती हैं
यहाँ linear mode में इस line की दुगुनी value है यहाँ इस line से
logarithmic mode में यह line 1 यह 10 यह 100 और यह 1000 हो सकती है
प्रत्येक step दस गुना अधिक value देती है और इसके साथ आप छोटे pixels देखते हैं जो linear mode में छुपे हुए हैं
आप इसे इस कोने में देखते हैं आप यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर वो pixels हैं जिनकी value 250 से ज़्यादा है
लेकिन logarithmic में आप देखते हैं कि image की पूरी range पर हमारे पास pixels हैं
फिर यहाँ curve type curve type नामक एक button है अब तक मैंने यहाँ वो tool प्रयोग किया जहाँ curve में वक्रता प्राप्त होती है और जब मैं curve type बदलती हूँ तो मैं वास्तव में curve को paint कर सकती हूँ और कुछ मज़ेदार चीज़ें प्राप्त होती है जो मैंने अभी तक प्रयोग नहीं की हैं
फिर save dialog और open dialog button हैं
जब आप curves में बदलाव कर when तो आप इसे आगे प्रयोग करने के लिए इसे सेव कर सकते हैं और जब आपको ज़रुरत हो आप इसे रीकॉल कर सकते हैं
मैं एक आदमी को जानती he जो बहुत सी शादियों में shoots करता है और उसके पास एक विशेष bright shot curve है जो सफ़ेद dress को संरचना देने के लिए सफ़ेद में अच्छी तरह से समायोजित है
इस image में मैं curves tool को कैसे प्रयोग करूँ
मैं image के dark भाग को थोड़ा ज़्यादा dark करना चाहती हूँ
मैं bit वाले भागों को ऐसा ही रखना चाहती हूँ और मैं bright भाग को थोड़ा ज़्यादा bright करना चाहती हूँ
और यह करने के लिए मुझे लगता है कि मैं s curve प्रयोग करुँगी
मैं curve के निचले भाग को थोड़ा नीचे खींचती हूँ और आप देख सकते हैं कि dark भाग थोड़ा ज़्यादा dark हो जाता है और bright भाग पर जाती हूँ और curve को थोड़ा ऊपर करती हूँ और bright भाग को ज़्यादा bright बनाती हूँ
अधिक brightness के लिए आप curve को थोड़ा अधिक खींच सकते हैं
जब मैं ok पर click करती हूँ curves की values संचित हो जाती हैं
और जब मैं यह प्रक्रिया को दोहराती हूँ तो आप देख सकते हैं कि histogram बदल गया है
यहाँ बिना pixels के बीच में कोई values नहीं हैं और जब मैं logarithmic mode पर click करती हूँ वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कुछ ख़ास pixels के लिए कोई values नहीं हैं
प्रत्येक बार जब आप curves tool प्रयोग करते हैं तो आप image में कुछ pixels को खो देते हैं
अतः curve operation को अनडू करने की कोशिश न करें इसका विपरीत करके यानि यहाँ curve ऊपर करके और यहाँ curve नीचे करके
ok पर click करें और अब आप देख सकते हैं कि यह और ख़राब होता जाता है और इसके परिणाम में आपको image colour banding के साथ मिलती है
अतः केवल एक बदलाव करने के लिए curves tool प्रयोग करें इसे ठीक से प्रयोग करें नहीं तो आप image में pixels so change और आपको colour banding वाली image मिलेगी
मुझे लगता है कि इस tutorial के लिए इतना ही
और मुझे आशा है कि आप अगले tutorial के लिए यहीं मिलेंगे
अगर आप टिप्पणी करना चाहते हैं तो कृपया info @meetthegimp org पर लिखें और मैं आपसे सुनना चाहूँगी अतः मेरे blog पर टिप्पणी करें